साथ ही साथ उसके अगर थोड़ा पीछे देखेंगे तो ये पूरी फील्ड दिख रही है जोकि खाली है।

उसके पीछे काफी सारे बच्चे खेलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे काफी सारे घर भी बने हुए हैं।

नदी के जो लहरें है वो इन पत्थरों से टकराते हुए आगे निकलते हुए तेज़ी से बहते चली जा रही है।

सामने ही एक बिल्डिंग है जो की पीले कलर की है और काफी समय से पेंट नहीं की गई है और उस पर धूल की परत है।

इस इमेज में हमें गिलासों का एक ढ़ेर दिखाई दे रहा है।

सरिये ऊपर की तरफ भी निकले हुए हैं जिनसे बीम का काम किया जा रहा है।

नीचे की तरफ कई सारी पेंट की बाल्टियां रखी गई हैं।

ऊपर छत का रंग सफेद कलर से किया गया है।

इस इमेज में हमे एक टैक्टर दिख रहा है जो कि नीले रंग का है।

सभी पेड़ों का रंग हरा और पेड़ बिल्कुल ताजा तरीन लग रहे हैं।

काफी सारे लोग भी दिख रहे हैं और विभिन्न-विभिन्न तरह की पत्रिकाएं सामने के झोपड़ी में दिख रही है।

दाहिने साइड में एक पेड़ भी लगा हुआ है और सामने एक नदी भी है।

इस इमेज में हमें पीछे के तौर पर एक पेड़ों का समूह दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है जिसके पीछे एक प्राचीन स्थल दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में हमें दो लोग गोल्फ स्टिक पकड़े हुए दिख रहे हैं।

इस इमेज में हमें एक बैनर दिख रहा है जिस पर न्यू गुजरात डीजल्स लिखा हुआ है।

एक आदमी हाथ में आरती की ज्योत लिए हुए भी खड़ा है।

इसमें तीन कुर्सियां भी हैं जो कि काले और थोड़ी सफेद कलर की है।

इस इमेज में काफी सारे आदमी लोग कुर्सी पर बैठे हैं और कुछ खड़े भी हैं।

इस इमेज में हमें अलग अलग रंग के पर्दे दिखाई दे रहे हैं जिसमें से कुछ सफेद और कुछ मल्टीकलर है।

उसके दाहिने साइड में एक बेड और सोफा भी रखा गया है।

इस इमेज में हमें अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे दिख रहे हैं जो कि योगा का अभ्यास कर रहे हैं।

दो सवारी टेंपो भी दिख रही है जिनका रंग पीले कलर का है।

फैंसी लहंगा एवं ज्वेलरी सेट किराए पर मिलते हैं ओन्ली फॉर लेडिज ।

सामने ऊपर की तरफ हमें अलग अलग रंग के कपड़े एक सफेद कलर के घर के ऊपर सुखाई देते हुए दिख रहे हैं।

साथ ही साथ काफी सारी कुर्सियां भी हैं और सामने ही एक आदमी भी खड़ा है।

और उसके ऊपर टीने की एक छत भी बनाई गई है।

इन सभी इमारतों का रंग सफेद संगमरमर कलर का है।

ऊपर कुछ लाइटे भी लगी हुई है और नीचे टाइल्स पर कुछ पौधों के गमले रखे हुए है।

इस इमेज में हमें एक बड़ा सा बोर्ड दिख रहा है जिस पर यादव ट्रेडर्स लिखा हुआ है।

बात करें बाहर और दाहिने साइड में तो वहां पर कुछ बाइक स्टैंड भी लगी हुई है।